एक आ आदमी है जा रहा है। एक आदमी दुकान पे खड़ा है।

ई टमाटर का खेती उ किया है। किसान ब्लू शर्ट पहना हुआ है।

बैलून का रंग गुलाबी है ब्लू है उजला --

देखने में सुंदर लग रहा है। कटिन वाला है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।